कम्पटीशन सी.बी.एस.ई. बिहार बोर्ड इत्यादि सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं ।

नगर निगम के कुछ स्टाफ रोड पर कचरा उठाने का काम कर रहें हैं।

यह व्यक्ति मछली काटते नज़र आ रहें हैं और यहाँ बहुत सारे मछली को --